एगो हरा है हरा में जानवर है जानवर प कुछ खा रहल है जानवर आ बत्तक भी है।

ये मैदान हैं ये खेल कुद के ये पोल हैं और उसमें मैदान में बहुत सारा लड़का है दर्शक भी है लग रहा है वहां पे है क्रिकेट वगैरह खेलता है। होता है --

एकरा मे भा ब्लर करके अ एगो लड़का के फोटो लियल गेल हैं।

घास वीडियो चा पौधा से ड्रोन से कैमरा फोटो खिचाई गयले पहाड़ हैं आसमान भी हैं।